जहां विजिटर विजिटर्स को स्टेट और नेशनल वाइल्डलाइफ सिंबल्स के बारे में बताया जाता है।

पिंक बस के ऊपर कुंवर टू इंटू टू ए_सी स्लीपर कोच लिखा हुआ है।

पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें एक हरे रंग का बस दिखाई दे रहा है।

डंबल्स वेट्स और ट्रेडमिल की लाइने साफ साफ दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें एक छोटा-सा घर दिखाई दे रहा है जो की हल्के नीले रंग का है।

ये तस्वीर किसी नदी या फिर झील की लग रही है।

यहां पुरा माहौल शांति और सुकून से भरा हुआ लग रहा है ये तस्वीर दिन के समय में ली गई है।

यह तस्वीर किसी इनडोर कैफे या फिर लाउंज का लग रहा है जिसमें लाइव म्यूजिक सेटअप दिया गया है।

तस्वीर में हमें कई सारे बिजली की खंभे और बिजली की तार दिखाई दे रही है।

बाएं तरफ हमें एक टॉवर भी दिखाई दे रहा है। मंदिर सफेद रंग का है।

बीच में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एवं यहां और एक व्यक्ति स्कूटर चलाते हुए नजर आ रहा है।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

तस्वीर में ज्यादातर कार का पिछला हिस्सा ही दिखाई दे रहा है।

कार के दाहिने तरफ कार के कुछ पार्ट्स और औजार दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ कुछ गाड़िया आधी अधूरी दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ एक दीवार पे पोस्टर टंगा हुआ हैं जिसपे लिखा हुआ है कीप साइलेंस बिकाज इट्स टाइम टू स्टडी ।

क्लॉक टावर के सामने कुछ पेड़ लगे हुए हैं जिसने क्लॉक टावर को आधा ढक दिया है।

हर बोर्ड पर कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं और दुकान के ऊपर करियर पावर का भी एक पोस्टर लगा हुआ है जो की एक कोचिंग इंस्टिट्यूट है।

सिलिंग में कई लाइट्स लगे हैं जिससे शोरूम जगमगा रहा है।

बाएं तरफ शीशे का दरवाजा लगा हुआ है।

वहीं दूसरी गाड़ी उसके बगल में ग्रे कलर की नीचे की ओर खड़ी है।

यह एक बच्चों का पार्क दिखाई पड़ता है यहां पे बहुत सारे बच्चों को झूलने के लिए झूले लगे हुए हैं।

तस्वीर में हमें ऊंचा क्लॉक टावर देखने को मिल रहा है।

यह तस्वीर किसी गांव या फिर टाउन के आउटस्कीर्ट्स का दिखाई दे रहा है।

बाईं ओर सफेद वैन खड़ी और कुछ छोटे मकान दिखाई दे रहे हैं।

जहां दोनों साइड महे लंबी पाल्म ट्रीज लगी हुई हैं।

नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लोग शॉपिंग और वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं।

तस्वीर एक कलरफुल टॉय ट्रेन की लग रही है जिसका नाम नीलांश एक्सप्रेस है।

इंजन के पीछे दो ओपन बोगीज है जिसमें लोग कंफर्टेबली बैठते हैं।

अंदर के सामने एक खुला आंगन है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे गमलो में लगाए हुए हैं।

चित्र में व्यक्ति हरे रंग का जैकेट पहन कर योगा मैट पे बैठा हुआ है।

बैठने की सीटें दो हिस्सों में बंटी हुई हैं एक नीचे की तरफ और उपर की तरफ हमें कुछ सीट्स दिखाई दे रहे हैं।

रूम में एक दीवान है दो चेयर्स है केअटन्स लगे हुए हैं ऊपर की तरफ ए_सी है।

आश्रम में बहोत सारे बेंच और चेयर रखे हुए हैं जो कि ब्राउन और हल्के नीले रंग का है।

पीछे की तरफ दीवार पे हमें ब्लैक रंग का डिस्प्ले बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे ऊपर के तरफ ट्वेल्थ कॉमर्स लिखा हुआ है और--

बार्बर वही खड़ा होकर उसके बाल काटने की तैयारी कर रहा है।